यहाँ अम यहाँ बहुत बड़ा कार का गेराज है इसमे दो कार को मेकैनिक सुधार रहे है।

बने हुए है यह कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है आगे भी पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे है यह बहुत ही बड़ा ग्राउंड है।

खुल्ले फूल भी रखे हुवे है राइट साइड मे बहुत सारी दुकाने दिखाई दे रही--